पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं इमारतों के ऊपर चमकदार आसमान दिखाई दे रहा है।

यहां पर आदमी मास्क लगाकर बैठे हुए हैं एक आदमी खड़ा है और बहुत सारी सामने मछलियां रखी हुई है।

सामने फल की दुकान है दुकान में काफी सारे फल हैं जैसे कि अंगूर नासपाती --

सेब यहा पर एक डस्टबिन भी रखा हुआ है और यहा पे बोरी और बाँस की टोकरीया रखी हुई है।

यहां पर एक कुटिया जैसी लोगों के ठहरने के लिए जगह है यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है --

यह एक आदमी है जिस ने हरे कलर की टी. शर्ट पहनें हुई है और इसने नीले कलर की निकर पहनी हुई है।

यह रेलवे स्टेशन है जिस पर अभी रेल नहीं आई है यहां पर बहुत सारे लोग रेल का इंतजार कर रहे हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं।

तो कुछ आदमी है तो कुछ औरते है यहाँ पर रेल के आस पास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ है।

है और हरी-हरी घासे हैं इसके उल्टे हाथ में --

यहां पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा एक जिराफ है जिराफ के आगे लोहे की बाउंड्री बनी हुई है।

जो की सफ़ेद कलर का है यहा पर बहुत सारे बेंच है और यह कक्षा गृह खाली है यहा पर एक ऐ.सी. है।

यह एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं हॉस्पिटल के बाहर --

यह एक स्टेडियम है यहां पर स्टेडियम में बहुत सारे खिलाड़ी हैं यहां पर दो टीम है।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

बहुत ज्यादा धुंद है यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है यह बहुत ही ज्यादा सूंदर लग रहा है।

सुंदर बादल आसमान में लगे हैं।

नदी के सामने दो लड़के फोटो खिंचवा रहे हैं दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख रखा है।

बस के आगे झेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है बस के साइड में एक लडका खड़ा हुआ है।

यह एक फल की दुकान है फल की दुकान के बाहर एक लाइट लगा हुआ है फल की दुकान में तरबूज --

यहां एक आदमी चल रहा है जिसके हाथ में एक थैला लटका हुआ है।

यहां पर सफेद कलर की मेज और सफेद कलर से सजाए हुई कुर्सियां रखी हुई है।

यह एक लाल कलर का घर है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से और बहुत ही ज्यादा --